इस गार्डन में बहोत अच्छा डेकोरेशन किया गया है और यहां पर बहोत सारे सोफे भी रखे हुए हैं।

एक भैया कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक टू व्हीलर बाइक उनके बाजू पे खड़ा हुआ है।

यहां पर सामने दो भइया लोग कैमरा लेकर खड़े हुए हैं।

और उनके पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं और वहां पर एक लाल कलर का ट्रक भी खड़ा हुआ है।

जो की एक अंकल फर्नीचर पर पॉलिस कर रहे है।

ये जो चीज दिख रही है ये पॉलिथीन के अंदर--

यहां पे जो इमेजेस दिख रही है मिरर पे ये माता की इमेजेस है।

पैटर्न में बनी हुई है और यहां पर एक आंटी और एक बच्चीया भी है।

टंगी हुई दिख रही है और दुकान पे एक चेयर भी रखी हुई है।

हनुमान जी की मूर्ति है और उनकी आरती हो रही है।

और यहां पर तीन गाड़ियां खड़ी हुई हैं जोकि एक फोर व्हीलर और एक दो टू व्हीलर है।

ये जो देख रहे हैं ये बिल्डिंग की कॉन्ट्रैक्शन्स हो रहा है।

और एक लैपटॉप रखा हुआ हैं जो की एक कोचिंग लग रही है यहां पर बच्चों को सिखाया जा रहा है।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

यहां पर हमें एक कंस्ट्रक्शन दिख रहा हैं।

और भी बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और बाजू में एक नदी भी है जिसमें पानी भरा हुआ है।